और भक्त भगवान की फोटो खींच रहे है और पीछे भी मंदिर बने हुए है।

और काफी लोग टेबुल पर रख कर भी खाना खा रहे है और यहाँ पर कूड़ा दान भी रखा हुआ है और सभी किचन वाले खाना बना रहे है।

टंगी हुई है और एक आदमी ऑफिस में बैठा हुआ है जो रिसेप्शन बना हुआ है। वहाँ पर बैठा हुआ है और पूरी दुकान बहोत ही अच्छी तरीके से सजी हुई है।